छोटे छोटे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं कुछ आसमान में येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर काफी सारे थंम्ब बने हुए है और ये एक लेडीज बैठी हुई है कि एक जी पेरी लगी हुई हैं इधर साइड में कुछ ग्रीन कलर का रखा हुआ है ये --

यहां पर एक बहोत बड़ा डिजाइन मे गेट बना हुआ है जो लोहे का है और वो व्हाइट कलर का है सीधा रास्ता अंदर को जा रहा है कुछ घर नज़र आ रहे है।

ये काफी बड़ी कंपनी सी नजर आ रही है सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का गेट है कोई दीवार है दीवार के बराबर में बाहर को कुछ सामान रखा हुआ है।

एक खंभा सा ऊपर को चौड़ा सा दिखाई दे रहा है कुछ तार से हैं पाइप से लटके हुए हैं।

दो आदमी साइड में बैठे हुए हैं। बेंच पड़ी हुई है और यह नीचे को काफी सारे फूल गिरे हुए हैं इधर कोई साइड में को भी काफी सारे फूल लगे हुए हैं।

बैंक भी है एस_बी_आई लिखा हुआ है और काफी सारी दरवाजे दिखाई दे रहे हैं दीवार है व्हाईट कलर की।